और कुछ गाड़ियां और एक मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड में दिखाई दे रही है।

प्लेटफार्म के दूसरी तरफ एक गाड़ी खड़ी है।

पहाड़ के ऊपर घास जमे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक लाइब्रेरी को दर्शाया जा रहा है।

पीछे ए काउंटर के अंदर बहुत सारी शीशे की ग्लास रखी हुई है।

दो आदमी है जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं।

यह एक नर्सरी है जिसका नाम अली नर्सरी है।

आसपास बांस की सहायता से बाउंड्री की गई है और काफी सारे हरे भरे छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं।